इसमें एक बड़ी सी मेज है।

यह एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां ढेर अच्छी अच्छी घासे हैं और इसमें बहुत सारे रूम हैं।

यह किराने की शॉप है जिसमें पानी की बॉटल ढेर सारी रखी हुई है।

और इसमे तीन डिब्बे भी रखे हुए हैं यह एक बंद रूम में है।

यह एक बहोत बड़ा रूम है जिसमें सारे बच्चे गाने बजाने--

हुई है तीन हारमोनिया दो बालक है जिनका फेस दिख नहीं रहा है और एक--

और एक नीचे पाइप बिछी हुई है।

इसमें बहोत सारे मुझे लग रहा है मेडल वगैरा रखे हुए हैं और डिब्बे डिब्बे ही भरे पड़े हैं।

यह लाइब्रेरी रूम है जहां ढेर सारी बुके रखी हुई है।

सी_एन_सी जाली कटिंग कंप्यूटर द्वारा की जाती है ढेर सारी जालियां रखी हुईं है औ --

और यहां पर दो रूम है और एक गेट लगा हुआ है। एक साइड में भी गेट दिख रहा --

और नीचे फर्श लगी हुई है और ऊपर लकड़ी की फर्श लगी हुई है। प्ले --

और यहाँ ढेर सारी टाइल्स लगी हैं एक बंद रूम है की घड़ी रखी हुई--

और एक कोटक बैंक है और एक शावानफी--

यहां तीन दुकान है और बड़ी बड़ी बिल्डिंग है एक ब्लू कलर की पेंट है एक रेड एंड वा --

जहां ढ़ेर सारे बच्चों की खेलने वाले चीज लगे हुए हैं झूले हैं।

बहुत अच्छे अच्छे घूमने वाली चीज लगी हुई है पेड़ है जो जाली में और बहुत सारे पेड़ और पीछे यहां फर्स है।

यह एक कागज का खिलौना है यहां बहोत सारे कागज के खिलौने बनाए गए है।

इस पर यह सामान सारा रखा हुआ है कांच के अच्छे अच्छे सामान रखे गए हैं।

फूल पत्तियां हैं और एक दो इंसान--

यह एक लाइब्रेरी है जिसमें चेयर है तीन।

और बुक रखी है पांन छे।

और इसमें गेट भी है कई सारे एक खंभा लगा हुआ है।

और इसमें एक फाड़वा है दो तसला है और इसमें गिट्टी है और--

चद्दर दिख रहा है और एक इसमें क बड़ा सा हॉल दिख रहा और पे--

एक लड़का है मास्क लगाए हुआ माता जी के हाथ में एक त्रिशूल है।

यहां एक किराने की दुकान है।

जहां अंदर किराने की दुकान है और बाहर फल फ्रूट बिक रहे हैं यहां--

यह इंडियन ऑयल है यहां पेट्रोल टंकी से केहता हैं एक बड़ा सा बैनर लगा हुआ है।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

बड़े बड़े रूम्स है और बगल दीवार हैं।